ये फोटो कुछ इंजीनियरों की है इन्होंने सर पर सफेद कैप --

जहां एक ऊंची बिल्डिंग बनी हुई हैं।

दुकान के बाहर बहुत सारी बाइके स्कूटर और कारे खड़ी हुई है।

और जींस पहनी है यहां खड़ा हुआ है।

यहां सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए।

यहां पीले और सफेद रंग में दो छोटे छोटे खंबे लगे हुए हैं।

ग्राउंड है और बिल्डिंग के पास मे--

साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है।

बहोत सारी लाइटे भी जल रही है।

ये फोटो एक रोड का है।

ये फोटो बहुत सारी भुट्टो की है। यहां --

थोड़ी दूरी पर सफेद रंग की ये--

ये तस्वीर कुछ शेरवानियों की है।

यहां लाल रंग का कालीन--

ये तस्वीर एक पतंजलि स्टोर की है।

इन्होंने एक जैसी मुद्रा करी हुई है।

झूले का रंग पीला है।

खेलकूद और जिम से जुड़ी चीजे सिखाई जाती है।

ये मशीने गेम खिलाने के लिए--

ये फोटो जिम का है यहां--

कई लोग जिम करते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर साइड से उसे दिखाया गया है।